और कुछ सेलर्स भी बैठे हुए है।

सामने एक कार भी खड़ी हुई है जिसका रंग सिल्वर है।

मैदान में नीचे बहोत सुंदर घास भी है और पीछे चांदनी भी रखी हुई है।

दुकान के बाहर उसका बैनर लगा हुआ है।

और बैनर भी लगा हुआ है एक आदमी बैठा है और चार कुर्सियां भी लगी हुई हैं।

और कई मशीने में भी यहां पर रखी हुई है जोकि काम आती--

जोकि लोगों को आकर्षित करती है सामने मेज कुर्सियां भी लगे हुए है और स्टूल भी रखा हुआ है।

यह एक मोबाइलों की दुकान है।

और बाहर एक कार भी खड़ी है वह भी किसी कंपनी की है।

यह एक सड़क हैं जिसमें हम देख रहे हैं बारिश के कारण बहोतसा पानी भरा हुआ हैं।

और बैनर और दीवार का रंग संतरी रंग का है और हरे रंग का है बहुत अच्छा लग रहा है।

हिरन बहोत ही ज्यादा प्यारे और सुंदर लग रहे हैं।

इस कमरे में बहुत ही सुंदर शेल्फ भी बनी हुई है और--